यहाँ पे जो है एक रेलवे स्टेशन है और उसपे एक प्रीमियम बुक स्टोर है उसमे एक बहुत सारी बुक भरी हुई है।

अभी ये यहाँ का गेट ब्लू कलर का है और एक बाहर भी दिख रही है यहां पर --

दूध हो गये चॉकलेट्स हो गए।

जिसमे बहुत सारे बुक है जैसे की रामायण हो गए भागवद गीता हो गए ।

और यहाँ पे दो लोग कलर लगाये हुए हैं फेस पे येलो कलर का और एक आदमी --

और दो मसाला को ऊपर से रस्सी ले के जा रहे हैं और एक आदमी टोपी पहना हुआ है और एक रस्सी पहने हुए है और बहुत सारे यहाँ पे खोल लिए --

और बहुत सारे लोग झुला भी झूल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे भी झुला झूल रहे --

और इसमें नीले कलर की प्लेटफोर्म भी लगे हुए हैं।